एक व्यक्ति ने ब्लैक टी-शर्ट ब्लैक लोवर पहना है एक ने नीली टी-शर्ट ब्लैक लोवर ।

एक कथे कलर का है एक काला बड़ा सारा साफ है।

जहाँ बड़ी सारी बिल्डिंग में बहुत सारे शटर ओपन खुले हुए हैं।

बाहर की ओर यहाँ पर बहुत सारी मोपेट गाड़ियां खड़ी हैं।

ये चित्र एक ब्यूटी पार्लर का दिखाई दे रहा है।

जो कि हरे लाल सफेद गुलाबी नीले कलर के--

बाहर क्यों कौन की बाउंड्री बनी हुई दिख रही--

एक मॉर्पेट एक्टिवा पीछे की ओर और भी बाइके दिख रही है।

ये चित्र एक स्टेज का मंच का दिखाई दे रहा है।

ये चित्र एक गांव के स्टेट बैंक का दिखाई दे रहा है जहां बड़ी सारी होर्डिंग पे--

ये चित्र एक बड़ी सारी दुकान का दिखाई दे रहा है।

यहां पे साइड में एयरटेल फोर जी का बैनर लगा है।

दिखाई दे रहा है बीच में हरे पेड़ पौधे भी दिख रहे।

एक मौलाना खड़े हुए हैं मेंबर के पास।

औरतों ने यहाँ शॉल ओड़ रखे हैं जिससे सर्दी का मौसम दिखाई दे रहा।

ये चित्र एक शादी का दिखाई दे रहा है यहाँ का गेट --

एक व्यक्ति पैदल आता हुआ दिखाई दे रहा।

यहां एक बड़ा सोफा और दो छोटे अन्य सोफे दिख रहे हैं।

सामने की ओर अलग-अलग कुंडियों में यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

ओ व्यक्ति योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं दीवार पे भी किसी चीज का स्टीकर लगा है।